बाहर जाने का रास्ता है चारों साइड खंबे हैं पेड़ हैं जाली है।

घर कीदीवारें रेड रेड कलर की चबूतरी भी रेड कलर का है।

पोल में खड़ा हुआ है पिंक कलर का टी_शर्ट और ब्लू कलर का जींस पहने।

यहां पेप्सी अ काखंबे में चिपका हुआ है।

ये अ स्टेज में प्रोग्राम हो रहा है।

अपना बाल कटिंग करवाया है और उसमें डिजाइनर बनवा रखा है।

बहुत सारा कंप्यूटर है लाइटिंग वगैरह है इधर ऑफिस में--

आय अ नीचे में भी फॉर्म फिर भरका है।

मेले में बहुत सारे डिस्को झूले नाव झूले रेंबो झूले--

ये एक सैलून है लेडी सैलून जहां दो थो--

महाराजकुछ मंत्र पढ़ रहे हैं लेडीज खड़ी हैं दो लेडीज बैठी हुई हैं बीच में एक लड़का बैठा हुआ है।

गाड़ी को सर्विस कर रहे हैं ब्लू कलर की टी_शर्ट में--

अपोजिट साइड में छोटे-छोटे घर हैं पेड़-पौधे हैं।

बहुत बड़ा झेड है बीच में पत्थर है।

यह शादी पार्टी एरिया है और एक घर को फूलों से झालरों से सजाया गया है।

होटल को बाहर में हाईटी वगैरह लगी हुई है।

जंगल में तीन लोग सीढ़ी से चढ़ते हुए जा रहे हैं।

और जंगल एरिया दोनों साइड पेड़ पौधे हैं।

मछलियों को धो के उसको उबालेंगे उबाल के फिर धोएंगे रगड़-रगड़ के फिर इसको बनाकर खा लेंगे--

औरखबा दिख रहा है उसमें बिजली की तार लटक रही हैं।

अ अ अ विंडो ए_सी है वो सब दिख रहे हैं साइड में पेड़ पौधे लगे हुए हैं बड़े--

यही झील है झील में सब कोई--

फैक्ट्री में कुछ बालू वगैरह निकल रहा है और उसमें दो वर्कर्स बैठे हुए हैं।

चीफ गेस्ट को बुलाकर बैठाया गया है किसी चीज की मीटिंग हो रही है साइड में दो लोग खड़े हुए हैं और सामने में कुर्सियां लगी हुई है।

सब मिलते हैं सामान भीड़ लगी हुई है।

नल शॉप है फर्नीचर्स की शॉप है।

यह पत्थरों के बड़े-बड़े इमारत और हरी-भरी हरियालियां पेड़-पौधे--

सभी पीठों के पत्थरों की इमारत हैं।

ये शादी पार्टी हॉल है और ये दरवाजे में एंट्री के लिए बहुत अच्छा डेकोरेशन किया गया है साइड साइड में ग्रीन कलर के म--

बगल में घर है वहां पर पेड़ पौधे हैं बड़े-बड़े पेड़ भी दिख रहे हैं सुनसान रोड--

ये स्टेज प्रोग्राम रहा है एम_पी में और वहां पर दुर्गा माता बनी हुई।

यहां दांतों की सफाई वगैरह होती है डॉक्टर बैठते हैं।

ये एक आटो स्टेशन है और ऑटो में एक आदमी खड़ा है और दो लोग बैठे हुए हैं।

उसके सामने एक आदमी बैठा हुआ है पीछे ऑटो की लाइन लगी हुई है।